कान्हा जी है उनके होंठ पर लाल लाली भी लगी हुई है हाथ में बंसी भी रखी हुई है और पास में भी हनुमान जी की मूर्ति है और--

तीन कस्टमर वो भी खड़े है पेट्रोल भरने वाले एक ऑटो भी खड़ी है इंडियन टैंक लिखा है बिजली टावर भी है।